हमें यहाँ पर एस.बी.आई. के ई.टी.एम. नजर आ रहे जहाँ पर तीन लोग खड़े हुए हैं। एक बच्चा कुर्सी में बैठा हुआ है। उसके निचे एक सीढ़ी है ।

आगे पर स्कूटी और बाइक खड़े हुए है और जिसके पीछे ही कुछ पेड़ है।

जिस के आस-पास बोहत ही गन्दगी है और यहाँ से दो मंज़िल का घर नज़र आ रहा है। ]

और एक व्यक्ति साइकिल में अपनी बेटी को ले जा रहा है और पीछे ही दो बस खड़े हुए है।

जिसमे से एक डॉ. भीमराव अंबेडकर जी का है जिसके पीछे मे ही गौतम बुद्ध जी का पेंटिंग हावय।

चर्च का दृश्य है और कैंडिल जला हुआ है पंखे तीन चार से भी ज्यादा है यही दिखाई पड़ रहा है।

यहाँ पर लिखाया हुआ है की भा भार शासकीय चिकित्सा महा झगराहा कोरबा दिखाया गया है जिसके आगे पर सात आठ बाइके खड़े हुए है और वहीं पर दो लोग नज़र आ रहे है।

यह किसी स्कूल के क्लास का दृश्य है जिसमें टेबल वगैहरा रखे हुए है और बोर्ड नज़र आ रहा है जिस में बच्चों को लिख कर पढ़ाया जाता है एक ग गेट लग लगाया गया है।

--लगाय गया है जहाँ पर पर्दे दिखाई पड़ रहे है और लाइट वेपरा की सभी प्रकार की बैठता है और शाम हो चुकी हैं।

यह घर जैसा प्रतीत होता है जो तीन चार मंजिल है जिसमें एक घड़ी बना हुआ है जिसके आ आसपास इसके कुछ पेड़-पौधे नज़र आ रहे है।